पैंट एक ठे सफ़ेद रंग क टी शर्ट लोवर पहिनले चप्पल पहिनले हउवन स दुनू अपने में बतियावत हउवन। एक खोलता दरवाजा पइसा अंदर निकाले --

इ त एकदम साफ चमकाइले ह गाड़ी के।